तो काफ़ी ज्यादा क्लासी सा और स्टैंडर्ड टाइप का फील दे रहे और जो भी कलर पैटर्न्स है वो भी काफ़ी ज्यादा सोफिसटिकटेड है।

देन आसपास के पेड़-पोधे जो हैं वो इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रहें हैं।

और यामाहा की जो बाइक्स है जो सुपर बाइक्स है वो उनका हम पोस्टर देख सकते हैं ।

मॉल के ग्रोसरी सेक्शन का व्यू हम देख पा रहे हैं हम यहाँ पर बैनर लगे हुए हैं आर्शीवाद आटा के और यहाँ पर ग्रोसरीस में सारी चीजें हमें देखने मिल सकती हैं सॉस वगेरा है आटा है तेल वगेरा --

दरभंगा रेल्वे स्टेशन का एक सीन यहा पे दिखाई दे रहा है जो कि ओवर बृजेश से लिया गया हैं दोनों तरफ जो है प्लेटफॉर्म के ट्रैंस खड़ी हुई हैं।

बिजली विभाग का जो भी अअ ट्रांसफॉर्मर्स और जो भी अ बड़े पावर सप्लाई का बड़े पैमाने पर पावर सप्लाई का जो प्लान्ट रहता वो हम देख पा रहे है यहाँ पे --

रेस्ट्रॉन के इंटीरियर पोर्शन का लुक हमे देखने मिल रहा है यहां पे वॉल्स की बात करें जिस तरीके से डिजाइने बनाई गई हैं पेड़ अं लताओं की जो--

एंड जो डिजाइन इसके पीछे ब्रिक वाला किया गया है ईंट वाला जो है वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ है और सुंदर दिखने में लग रहा है।